इस दुकान में कई बोतल देखे जा सकते हैं।

एक चलने का रास्ता देखा जा सकता है।

आसमान नीला है और खुला है।

चार चार के जोड़े में दो जगह पर रखे हुए हैं टायर काले रंग के हैं।

ऑफिस की छत टीना से बनी हुई है।

और बाहर झंडे के लिए एक पोल देखा जा सकता है।

यहां पर टीना से बने कई घर देखें जा सकते हैं।

इस तस्वीर में कई आदमी दिख रहे हैं।

तस्वीर में नीले रंग की रोशनी अधिक है।

कार्यालय के द्वार के बाहर एक छाता रखा हुआ है।

दरवाजे के बाहार सूचना दो सूचना पत्र लगे हुए है।

दाहिनी ओर एक स्कूटी का हैंडल देखा जा सकता है।

यह किसी पेट्रोल पंप की तस्वीर है।

यहां पर कई नीली रंग की कुर्सियां रखी हुई है।

इस तस्वीर में चार औरतें वह एक मर्द देखा जा सकता है।

इसमें सफेद रंग से बाउंड्री बनाई गई है।

यहां पर दो अरुणाचल के पारंपरिक तौर पर बनाए हुए घर देखे जा सकते हैं।

यह तेजू लोहित डिस्टिक के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।

एक खिलाड़ी गेंदबाज़ी कर रहा है।

इस दुकान का नाम चौधरी टेलर्स एंड क्लोथ्स है।

कई लोग भगवा रंग का गमछा ओढ़े हुए हैं।